इसमें पांच फ्लोर बने हुए हैं।

यह किसी ई रिक्शा का शॉप हो सकता है।

एक दो समान ढोने वाला ट्रॉली भी रखा हुआ है।

इसमें मेजे और कुर्सियां रखी हुई है।

दीवालों पर बैलून लटकाया गया है।

मेज भी रखा हुआ है।

रोड के किनारे हरे हरे वृक्ष लगाए हुए हैं।

इसमें हरे रंग का रैक बनाया गया है।

सोफों पर कुशन भी लगाए गए हैं।

झरने के ऊपर हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति बनाई हुई है।

पीले कलर का टी शर्ट पहने व्यक्ति गिट्टी और बालू मिला मिश्रण छत की ढलाई पे डाल रहा है।

इसमें मिकी माउस बनाया हुआ है जिसमें बच्चे जंप कर रहे हैं।

एक फूल भी बना हुआ है।

एक दो स्लाइड भी बने हुए हैं जिस पे लाल और पीले रंग का कलर किया गया है।

यह तस्वीर किसी बड़े से गेट का है जिसके ऊपर रांची नगर निगम लिखा हुआ है।

गेट के अंदर की तरफ एक व्यक्ति खड़ा है।

चार दिवारी के ऊपर तारों से घेराबंदी की हुई है।

केले का वृक्ष भी दिख रहा है।

गेट के बाहर एक शेड भी बना हुआ है।

मंडप के बीच में एक कलश रखा हुआ है।

चप्पल हवाई पहनी हुई है।